और इधर -उधर भी मस्त है गार्डन -उडन हैं।

एहे जूता चप्पल दुकान हैं मस्त दिख रहा हैं मस्त सजा के रखे हैं चप्पल जूता सबको।

ए है केनिमा- केनिमा कुछ लिखाया हुआ है यहाँ पर बॉक्सर एण्ड ए दुकान है कुछ सभी प्रकार का सामान -उमान मिलता होगा यहाँ बड़ा मॉल जैसे लग रहा --

शादी वादी है या कुछ फंगक्शन रखे होंगे यहाँ पर--

मूवी का नाम लिखा हुआ है या तो फिर यहाँ पे फोटो -- वोटो लगाके लिखे है मस्त दिख रहा है मिरर दरवाजा हैं ।

देखिए ये वाला घर मस्त झालर उलर मस्त लगा है लाईट वाईट मस्त दिख रहा है वहाँ पर दो आदमी है इधर कार भी खड़ा है अंदर मे गए है अभी अभी अंदर मे जाएंगे पार्टी वार्टी है यहाँ पर--

यहाँ पर देखिए पुलिस गाड़ी है पुलिस वाला साइलेंसर बज रहा है।

और यहाँ स्कूटी खड़ा है एक ठो और इधर आदमी भी है दो झने मस्त दिख रहे है वहाँ पर टका टक मस्त लाइट वाईट मस्त दिख रहा--